यहां पे रेड कलर की चटाई बिछाई हुई है और वाइट कलर की मेज है यह शेरवानी शादी में दूल्हे को पहनने में काम आती --

यह किसी स्कूल का प्रोग्राम लग रहा है यहां पे दो लड़के और लड़कियां खड़ी हुई है जो --

और आस पास बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं और मेज पे गमला भी रखा हुआ है डिजाइनर और यह लुक बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां गाडियां बहोत सारी पार्किंग यार्ड में खड़ी है पिंक कलर ग्रे कलर रेड कलर की स्कूटीयां खड़ी है व्हाइट ग्रे और --

बहोत सारी नाव में कुछ लोग बैठे हुए हैं और सूरज की किरणें उनपे पड़ रही है जो एक सुंदर --

और यहां पे वाइट कलर की जालीदार बॉल भी रखी हुई है और गेट भी वाइट कलर का लगा हुआ है।

यह एक सब्जी मंडी के जैसे सब्जियां बिकती है यहां पे लोग बोरियों में सामान भर के ले के जाते हैं।

यह एक कैफे है यहां पे बहुत सारे डिजाइनें चीजें बनाई हुई हैं दारू और भी मिलती है लड़कियां भी है।

यह एक शॉप है यहां पे कॉपी किताबे पैन पेंसिल सारी चीजें मिलती है यहां पे बुक पैन भी मिलता है और यहां पे --